एक बहुत बड़ा किराना दुकान है | किराना दुकान मे बहुत सारा बैलून --

डिज़ाइन बना के रखा हुआ है सजा कर के बोहोत ही अच्छा तरीका से सजाया हुआ है।

चूहा का कलर येलो और व्हाइट हैं।

आज भी बहुत सारा मशीन मिक्सर मशीन --

क्युकीं इस जंगल में वो कीड़ा मकोड़ा --

और एक बहुत बड़ा मशीन है।

जो की बहोत सारा टेबल और बहोत सारा कुर्सी है।